पार्क में मौजूद है जो कि एल. ई. डी. लाइट की मदद से हम देख पा रहै हैं।

यहाँ के प्लेटफार्म का टाइल्स गोल्ड और पिंक कलर का है।

अकबर की दिख रही है जिसके पीछे उसकी शैडो भी नज़र आ रही है।

जो की कुछ बेच रहा है अपनी गाड़ी में--

इसके दाएं और बाएं जानी बहुत से झाड़ मौजूद है।

बस स्टॉप ऑरेंज कलर का हैऔर आगे की और वाइट और रेड --

और सिल्वर ब्लू रेड कलर के बस रुके हुए।

असेंबली किया है ठीक उसी के आगे एक एसेस की रॉड से कुछ बना हुआ है स्टेज के ऊपर स्पीकिंग टेबल मौजूद है।

कलर की ग्राउंड की छांव है ग्राउंड में टोटल चार लोग है।

जिसके ऊपर चेरी बादाम और अंजवाइन रखा गया है।

एक झोला दिख रहा है जो की--

और बहुत से ग्रे कलर भी नज़र--

जोकि येलो बॉक्स रेड बॉक्स ( ब्लू बॉक्स और व्हाइट बॉक्स --

लेफ्ट साइड में बहोत से हरी-भरी घास-फूस और हरियाली है।

राइट साइड में गार्ड स्टे करने वाला रूम मौजूद है।

आगे बहुत से पानी दिख रहे है आसमान में--

नीचे पानी का रंग भीग्रे और महरून में तब्दील हो चुका है।

जिसमें एक छोटी नांव में बहुत से लोग सवार है।

जोओ के इस नाव में कहीं पे जाने की तैयारी कर रहै है।

इंटीरियर डिजाइन से एल. ई. डी. लेट लगाया गया है।

और उस पर लिखी लेटर ब्लैक कलर में लिखी गई हैं।

एक स्कूल की तस्वीर है जिसमें बहोत से बच्चे अपने एक्टिविटीज में बिजी है।

और सारी जगह कंप्यूटर चेयर्स के साथ-साथ कंप्यूटर टेबल --

और ऊपर एक सीलिंग फैन दिख रहा है और यहाँ पर नेट भी दिख रहा है।

लेफ्ट साइड में एक सफेद बोर्ड में कुछ वार्निंग्स लिखा हुआ है।

और बहोत से सारी चीज़े मौजूद है।

शादी मेल के जैसा स्टेज सजाया गया है जिसमें गोल्ड कलर के क्लॉक चेयर में पहनाया गया है।

और स्टेज पर भी गोल्ड और आयरन क्लॉथ से सजाया गया हैं।

और राइट और लेफ्ट साइड में थोड़ा फोटो एडिटेट है जो की ग्रे शेड आया हुआ है।

और दूर देखे तो पहाड़ और ऊपर देखे तो आसमान --